उसके बगल में एक सड़क है सड़क पे सपेद रंग की कुछ गाड़िया खड़ी है और कुछ लोग आ जा रहे है।

पिस्ता कलर की है वहाँ पे झाड़ियाँ है पौधे लगे हुए है जो कि हरे कलर के है दाएं तरफ दीवार हरे रंग की है।

एयर पिस्टल एयर रिफिल कोच सुनील शर्मा--

यहां एक मैदान है मैदान में हरी हरी और पीली पीली घास है और कुछ हिरन हैं और एक हिरन का बच्चा भी है।

यहाँ एक आदमी खड़ा है जो वाइट रंग की टीशर्ट और ब्लू रंग की जीन्स पहने हुए है।

ओरतो ने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हैं।

यहाँ एक मैदान है मैदान की मिट्टी पीले रंग की है।

जोकि खुला हुआ हे उसके अन्दर एक आदमी हैं।

आगे बैठे एक आदमी जिम कर रहा है जिसने ग्रे कलर की टी शर्ट और ट्रैक पेंट्स पहना हुआ है और शूज पहना हुआ है।

यहां पे टाइल्स का रास्ता है सामने घर है।

और यहां पे खुदाई के काम चल रहा है जहां पे गिट्टी भी रखी हुई है।

यह एक प्लेटफॉर्म है यहां पे कहीं कहीं छांव और कहीं कहीं धूप है।

यहां बहोत सारा पानी है और पानी के ऊपर पुल बना हुआ है।